एक आदमी बुरा है और एक आदमी थोड़ा जवान है।

और यहां पर तीन ते तेन लगाए हुए हैं।

में एक रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है और यहां पर बहुत साफ रखा हुआ है।

यहां पर बहोत बड़े बड़े पत्थर दिख रहा है और घास भी बहोत सारे है।

गुब्बारे सफेद कलर की भी है ब्लू कलर के भी है।

और ब्लू कलर का एक बास्केट दिख रहा है जहां पर कपड़े रख सकते हैं।

ये देखने में एक घर है बहुत बड़ा सा घर है।

और इस रेस्टोरेंट के एंट्रेंस में स्टेयर्स में बहोत सारे फ्लावर्स भी है रखे हुए।

यहां पर फंक्शंस कन फंक्शंस जैसे बहुत होगा।

सामने दो बच्चे भी दिख रहा है उस बच्चे ने ब्लू कलर का शर्ट डकाया हुआ है।

देखने में यहां पर बहुत सारे सफेद बिल्डिंग है लाल बिल्डिंग भी दिख रहा है।

ये देखने में आर्मी कैंप जैसा दिख रहा है और उस भी उसके बीच में एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है।

और साइड में देखेगा तो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स भी यहां पर दिख रहा है।

और यहां पर आदमी लोग पैसा निकालने के लिए आए हुए हैं।

और उसके सामने स्कूटी भी दिख रहा है बाइक भी दिख रहा है।

और उसके पीछे एक येलो कलर का बिल्डिंग भी दिख रहा है जोकि स्कूल भी हो सकता है।

और एक ने काला कलर का स्वेटर लगया हुआ है।